महिलाओं के लिए स्वेटर रखे हुए हैं।

और यहां डिब्बे सफेद रंग के डिब्बे में कु--

और यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने--

सामने एक बड़ा सा मकान दिख रहा है जिसका रंग भूरे रंग का है।

और कुछ कुर्सियां टेबल लगी हुई है जिनके रंग--

संतरा आदि रंग के दिखाई दे रहे हैं।

जिसका रंग सफेद रंग का दिख रहा है।

और सामने एक आदमी है जिनने सफेद और काले रंग के कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे घांस फूस है जिनके रंग--